ये मछली का मौछ होता है मछली का टांग चार होता है यह मछली का अंडा बड़ा बड़ा और नहीं होता है।

और यहां पर ड्राम भी रखा हुआ है और यहां पर पंखा दिख रहा है और--

हरा हरा पौधा है यहां पर ई आदमी सब ठहरा हुआ है यहां पर चमकी भी लगा हुआ है जो मंदिर का गेट है जो वाइट कलर का है।

और उम्म मशीन दुकान का है जो वाइट कलर का मकान है जो यहां पर दूसरा म--

कंप्यूटर जिसका कलर ब्लैक है। यहाँ प माउस है और कीबोर्ड है जो टेबल पर रखा हुआ है।

रखा हुआ है यहां पर बिजली का तार दिख रहा है दो कलर है यहां पर घर है जो--

ये विद्यालय जो रेड कलर का पेंटिंग किया है इसके ऊपर घड़ी है इसके आजू बाजू में पेड़ पौधे और एक चार चक्का दिख रहा है और यहां पे रो रहे--

यहां पर बस है जो बस है जो वाइट और गुलाबी कलर के आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का यहां पे पौधा भी है और इंसान यहां पर जा रहा है और गाड़ी में बैठ रहा है।

इस जो टांगा हुआ है और जो अलुमिनियम की लोहा है इसमे टाईल्स भी लगा हुआ है रेड कलर से पेंटिंग --

यहां पर एक बक बाइक लगा हुआ इसमें तीन आदमी बैठा हुआ है इसमें सिलेंडर रखा हुआ आग लगने से बचने के लिए--

दो एक बुलेट लगा हो जिसका ब्लैक कलर है और स्पेशल प्रो लगा है जिसका यहां पर डी_जे भी है।